साइकिले प्लास्टिक की चादरों से ढकी हुई है।

ग्राउंड में कई बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम में एक चांदी रंग की होंडा सिविक कार प्रदर्शित की गई है।

जिसके ऊपर बच्चों ने कलाकृति किए हुए सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक मस्जिद का आंतरिक दृश्य दिखाई दे रहा है।

इसमें कई बच्चे और युवा मिलकर पौधे लगा रहे हैं और जमीन की सफाई कर रहे हैं।

जो जालीदार तार से बना हुआ है।

अर बीच में एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

इस चित्र में एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पार्क के दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं और गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।

यहां कई सारी दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

नर्तक पारंपरिक भारतीय परिधान विशेष रूप से सफेद कुर्ता और घेरदार पैजामा पहना हुआ है।

तस्वीर में एक सुंदर झरना दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति के पीछे एक गुफा का द्वार भी दिखाई दे रहा है।

दीवारों का रंग हल्का हरा है और छत पर सीलिंग लाइट्स लगी हुई है।

यह तस्वीर एक दुकान के अंदर का दृश्य दिखाई है।

काउंटर का रंग सफेद है।